लाउड स्पीकर लगा हुआ है लाइट जल रही है सब कोई आनंद से यहां पर बैठे हुए हैं।

देने वाला स्टैंड लगा हुआ है।

तीन चार आदमी यहां पर हैं एक आदमी के हाथ में जैकेट है जूता पहने हुए है।

जाने का बहुत सुंदर रास्ता है टाइल्स लगा हुआ है।

स्कूटी पे यहां पर बैलून बेच रही है एक लेडीज ।

हाथ में सब कोई कागज रखे हुए हैं।

गिन्नी गहना घर है यहां पर बहुत सारे गहने बेचे जाते हैं।

हरे भरे चारो तरफ नजर आ रहे है सामने बहुत बड़का पहाड़ है।

यह एक खूबसूरत झील है यहां पर हरे हरे रंग के बहुत से पेड़ हैं।

इंदिरा गांधी की तस्वीर लगा ए है यहां पर रंग बिरंगे किताबें उपलब्ध है।

यहां सारे जिम के ब्वाय है सब कोई जिम कर रहे हैं।

यहां किचन में ना ना प्रकार के भोजन रखे गए हैं अनेक प्रकार की वस्तुएं यहां पर रखी गई है।

ऊपर हीटर भी लगा हुआ है हीटर का प्लग ब्लैक रंग का है।

इधर साइड में एक आदमी टी शर्ट पहन कर के खड़े है।

बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं। अच्छे पेड़ हैं बालकनी में ।

म्यूजिशियन लोग बैठें हुएं हैं एक नाल वादक हैं एक बैंजो हैं।

आ घर का बैनर लगा हुआ है यह सुकन्या समृद्धि योजना का डाकघर है।

चैंपियन का बोर्ड लगा हुआ है।

बगल में एक दुकान है।

और पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं।